और ऊपर में टिने का शेड भी बना हुआ--

आजू बाजू पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं और हरा भरा वातावरण दिख रहा है।

टोन ऐसा लिखा दि नजर आ रहा है और--